यहा एक मैन रोड का सीन है उम जिस पर के पुनः विजिट करने के लिए आमंत्रित किया इंडीकेट कर रहा है।

ये भी एक उम्म छोटा सा दुकानदार अपना मछ्ली ले के बैठे हुए हैं ग्राहक के इंतजार मे।

यह भी एक जिम का ही सीन है जहा के बहुत सारा अ एकुमेंस उपलब्ध है और ये लड़का लगता है जोकि सेल्फी ले रहे है। अ--

क्युकी लाइट जल रहा है यहा शाम मे भी देर सबहेर ग्राहक आके यहा से अपना समान मछली ले सकते हैं।

यहां भी जिम का ही सीन है एक लका जो है वो वैटलिफ्टिंग कर रहा है।

अच्छा डेकरैशन है एक लोग अपना एक आदमी अपने उसका एन्जॉय ले रहे हैं।

अ प ग्राहक अपना ए बैंक से लेन-देन और ए.टी.एम से निकाल और जम के लिए खड़े हैं।

यह एक पार्क का सीन है यहाँ बच्चे सब उपस्थित है खेल रहे हैं।